यहाँ कारपेट वार्पेट बिछाया हुआ है और यहाँ पे देख सकते है वेलकम टू टाउरसिम केपिटल ऑफ़ महाराष्ट्र औरंगाबाद। ये औरंगाबाद का है और ये महाराष्ट्र मुंबई तरफ पड़ता है।

और बहुत ही सुन्दर है और यहां पे कुछ मुकम्मर ऐसा कर के कुछ लिखा हुआ है और यहाँ बहुत ही भीड़ लग रहा।

--देख सकते है ये घर है और ये बहुत ही सुन्दर घर है और यहाँ पर देख सकते है कुछ घास भी निकला हुआ है और यहाँ पर देख सकते है कुछ घास भी हैं।

और यहाँ पे देख सकते है कुछ आदमी-वादमी भी इसके बगल में खड़ा है और छोटे-छोटे घास सब है और इसके पीछे में भी कुछ घर-उर है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यह और बहुत ही बड़ा-बड़ा --

थोड़ा-थोड़ा आम गाछ भी लगा हुआ है और छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए है और ये पेड़ के बगल में एक फोर व्हीलर भी लगा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है और चार पहिया है।